यह एक टेबल है टेबल के ऊपर एक ब्लू कलर का कपड़ा बिछा है जो कि आई वो यहाँ पे बहोत सारे कागज के बने टॉयज जोन रखे हैं।

यहाँ एक पार्क है जो कि बच्चों का है यहाँ पे फिसल पट्टी झूला सब है यहाँ एक साइड जाली का है यहाँ पे बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहां ला शाम को सब घूमने आते हैं।